गुरुद्वारा के ग्रील पे एक भाई खड़ा लड़का खड़ा नजर आ रहा है।

परन्तु यहां पे कोई भी नजर नहीं आ रहा है यहां पे पार्किंग एरिया भी बना हुआ है।

पीछे एक बहुत ही बड़ा फ्रिज नजर आ रहा है लड़के ने व्हाइट और रेड कलर की टी टस--

बिल्डिंग व्हाइट कलर की बनाई गई है बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे--

बिल्डिंग के सामने रेड और वाइट कलर का बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है।